तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक गेट टाइप का--

इस तस्वीर में मुझे दिख रहा है कि--

इस तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि--

और उससे ज्यादे हम नहीं बोल सक--

और उसके आगे स्पष्ट रूप से होल्डर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां पर फ्लैट है बहुत सारे खिड़कियां नजर आ रहे हैं सब में।

और आगे बढ़ने पर स्टैंड लगे हुए हैं उसमें क--

चतुर्भुज आकार का अ लाइट जल रही है।